जो बाजू मे एक लड़का है जिसका की आधार अपडेट करने आया है।

एक लड़का मोबाइल से वीडियो देख रहा है।